मुझे इस फोटो पर एक छोटासा रेल्वे स्टेशन नजर आ रहा है।

तथा कोचिंग सेंटर की दिवालों पर बड़े बड़े नक्शे भी लगे हुए हैं।

मुझे इस फोटो पर एक स्कूल का--

यह मंदिर लाल रंग का है तथा प्यारा सा है।

इस दुकान पर कुछ खाने पीने की चीजें तथा तरह तरह के पैकेट वाले मसालें भी टंगे हुए है।

मुझे इस फोटो पर एक दुकान नजर आ रही है।

जैसे कुडकुरे चिप्स टॉफी और ब्रेड टोश वगैरा है इसमें रखें हुए हैं।

कुछ लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई है तथा कुछ लोग आते जाते भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो पर एक बड़ासा हॉस्पिटल --

इस शादी पर कैटरिंग की बड़ी सी टेबल नजर आ रही हैं।

यह चर्च बहुत सारी लाइटों से सजा हुआ है।

तथा चर्च के बाहर एक बड़ा सा पानी का फुहारा भी नजर आ रहा है जिसमें बहोत ज्यादा भीड़ है।

मुझे इस फोटो पर एक बड़ा सा पूल नज़र आ रहा है।

इस पुल के ठीक नीचे बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं।